और बहोत सारे पेड़ दिख रहे हैं।

और पीछे चेयर रखी है और एक बो बैनर लगा है जिस पर--

अ अ म इनके आगे दो स्टील के अ बाउल रखे हैं।

अं घोड़ा बना हुआ दिख रहा है।

और पीछे आसमान दिख रहा है।

जो ऑरेंज और व्हाइट कलर के हैं।

हमें एक पुराना गेट दिख रहा है जो पत्थर का है।

इस इमेज में हमें--

चिकन लॉलीपॉप रखे है।

अ डंबल उठाया हुआ है।

इस इमेज में हमें--

एक नर्सरी दिख रही है।

एक बोर्ड दिख रहा है।

अ बहुत सारे बलूनस दिख रहे हैं।

इस इमेज में हमें--

मास्क लगा के बैठे हैं।